अपना जो टंकी भी रखा हुआ है कपड़ा का कलर जो अलग अलग है।

बाहर पहाड़ दिखाई दे रहा है और आसमान भी जो वाइट कलर में दिखाई दे रहा है।

यहाँ मे जो बहोत जरा मिस्त्री लोग दिखाई दे रहे है और ओ लोग जो काम कर रहा है ओ लोग जो एक थलाई कर रहा है। या में बहोत जयादा लोग भि दिखाई दे रहा है।

ये लोग जो अलग अलग कपड़ा पहन के रखा हुआ है एक वॉल भी दिखाई दे रहा है वॉल ओ जो व्हाइट कलर में है।

जरा मिठाई तिनका अबूतून भी है कुछ कार्टून भी दिखाई दे रहा है बहुत ज्यादा डब्बा भी है।

खिड़की भी दिखाई दे रहा है और खिड़की में कुछ परदा भी--

घर है वो जो वाइट कलर में दिखाई दे रहा है कुछ खिड़कियां भी दिखाई दे रहा है लेकिन वो बन के रखा हुआ है कुछ टीना भी दिखाई दे रहा है और उसका पीछे में जो स्ट्रीट लाइट है।

जो एक दुकान दिखाई दे रहा है और दुकान का अंदर में जो एक बड़ा सा टेबल है।

बहुत जरा कार्टून भी दिखाई दे रहा है कुछ प्लास्टिक जो टांगकर भी रखा हुआ है।

में जो छोटा छोटा घास भी दिखाई दे रहा है और वो भी जो ग्रीन कलर में है।

खिड़की भी दिखाई दे रहा है उसके सामने में जो कुछ पेड़ पौधा दिखाई दे रहा है और कुछ पोल भी दिखाई दे रहा है।

ब्लैकबोर्ड भी है कुछ पोस्ट भी दिखाई दे रहा है और बहोत ज्यादा प्लास्टिक भी दिखाई दे रहा है।

जरा सामान भी दम रखा हुआ है कुछ अलमारी टाइप का इसका अंदर में भी।

और आसमान जो व्हाइट कलर में दिखाई दे रहा है।

बहुत ज्यादा घर अह पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहा है लेकिन ब्लैक कलर में है।

और वो जो एक टेबल का सामने में बैठा हुआ है कुछ चेयर भी दिखाई दे रहा है एक फैन भी है।